और ऊपर में आसमान दिखाई दे रहा है सामने एक रोड है।

एक ओवर ब्रिज फुट पाथ है ओवर ब्रिज बीच मे कुछ पटरिया दिखाई दे रहा है।